एक मैदान है यहाँ पे एक मोटर साइकिल रखी हुई है पास में यहाँ पर टावर दिख रहा है बाजू में यहाँ पे पेड़ लगे हुए है।